यह एक ऑफिस रूम है और यहाँ दो लैपटॉप रखे दिखाई दे रहे है और दो कुर्सी बिछी हुई है और यह ऑफिस बहुत सुन्दर सजाया गया है।

सामने नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है जिस पे यह सीढ़ी लगी हुई है।